यहा पर एक कार दिखाई दे रही है। कई पेड़ दिखाई दे रहे है। पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। सामने गार्डन दिखाई दे रहा है।

यहा बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ सुखी लकड़िया दिखाई दे रही है।

यहा पर कई केक दिखाई दे रहे है अँड ब्रेड दिखाई दे रही है अँड कुछ वेफ़र दिखाई दे रही है अँड > समोसे दिखाई दे रहे है।